बिल्डिंग एक चर्च की लग रही है ऊपर एक क्रॉस का सिंबॉल दिख रहा है।

सामने में एक हॉल दिखाई दे रहा हैं।

दी हुई तस्वीर में एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा--

कुछ डेकोरेशन के सामान से उसको सजाया दिखाई दे रहा है।

चर्च के ऊपर में स्टार दिख रहा है क्रॉस का चिन्ह दिख रहा हैं।

कुछ लोग नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं तार दिखाई दे रहे है कुछ बाइकस खड़ी दिखाई दे रही है।

नीले रंग की एक टंकी दिखाई दे रही है और नारंगी रंग की एक पनडुब्बी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कॉलेज की दिखाई दे रही है. जिसने काले रंग के बोर्ड में कॉलेज का नाम लिखा दिखाई दे रहा है।